इस इमेज में ब्लू कलर का खिड़की दो दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

और इस घर का छत भी व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

और दो आदमी को भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक ग्रीन कलर का टीना दिखाई दे रहा है।

छत के ऊपर दो काला टैंक भी दिखाई दे रहा है।

और दो बाइक भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक बोर्ड में एस_बी_आई लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

साइकल भी दिखाई दे रहा है।

और रूम के अंदर एक बेड भी दिखाई दे रहा है।

और ये रूम का वॉल भी वाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

और ढेर सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और ईंट भी दिखाई दे रहा है।

ट्यूबलाइट दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में दो गाड़ी दिखाई दे रहा है।

सीलिंग में सीलिंग फैन वो भी दिखाई दे रहा है।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

और ब्लैक रोड भी दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक पानी का पाइप दिखई दे रहा है।

और नीचे बी एस एन एल लिखा हुआ वो भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का कलर वाइट कलर भी दिखाई दे रहा है।